कुछ हैंगर वगैरह भी लगे हुए हैं एक चेयर है।

फ्रूट मार्केट है जिसमें एक दुकानदार बैठे हुए हैं।

इसके बगल बगल मे दो ब्लैक कलर के लाइट्स नज़र आ रहे है।

जो दो टेबल है जिसमे तीन फ्लावर वसेस है।

ये एक घर नज़र आ रहा है जिसमे कुछ पुराने पुराने तरह तरह की क मुर्तिया स्टेचू --

एक लेडी ने सूट पहना हुआ है जिसने--

वो एक आदमी फिश सेल्लिंग कर रहा है जहाँ तरह तरह के--

अफरा तफरी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है।

इसमें कई प्रकार की गाड़िया ओइल लेने के लिए लाइन मे--

और बगल मे एक छोटा सा दुकान है।

ड्राइंग कॉपी नज़र आ रहा है।

ठंड के कपढ़े स्वेटर पहने हुए है।

इंटीरियर इतनी खुबसूरत रंग बिरंगे--